यहाँ पर हमें सब्जी मंडी दिख रही है जहाँ पर अलग -अलग दुकाने बनी हुई है।

यहाँ पर हमें एक मेन गेट दिख रहा है जो की वाइट कलर का है उसके आस-पास हमें दो गेट और दिख रहे हैं जो कि ब्लू और ग्रीन कलर के हैं।

यहाँ पर हमें एक लड़का बैठा हुआ दिख रहा है जो की मिरर मे से फोटो खींच रहा है और उसने बालों पर अपने रब्बर बैंड लगा रखा है और वहाँ पर एक स्टेज भी बना हुआ है जिस पर बहुत सारी कुर्सियाँ रखी हुई है।

--पहना हुआ है और एक लडकी बैठी हुई है जिसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है यहां पर हमें बहुत सारी फ्रेम्स लगी हुई दिख रही है और लाइट्स भी दिख रही है।

यहां पर हमें फिश मार्केट दिख रहा है जिसमे एक आंटी जी बैठी हुई है और यहाँ पर उनके पास सभी प्रकार की फिश है जो की मरी हुई भी है और कुछ जिंदा भी है।